यह एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें आगे में बहुत सारा हरा-हरा रंग का मिर्ची दिखाई दे रहा है आगे में एक आदमी का हाथ भी दिख रहा है।

यह एक मूर्ति दिखाई दे रहा है जो कि गौतम बुद्ध का लग रहा है ऊपर में पांडाल भी लगाया गया है नीचे में --

आगे में बाँस भी लगाया गया दिख रहा है और नीचे में बहुत सारे लोग कुछ कुछ पकड़े भी हुए हैं।

यह एक टेंपू दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारा लोहा का क्षर लादा गया है ऊपर में बहोत सारा छड़ खड़ा भी किया हुआ है।

के बगल में रोड भी दिख रहा है इसके ब पीछे में एक आदमी भी आता हुआ दिख--

यहाँ पर एक फंक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें दो बच्चे कूद रहे हैं और ऊपर में गुब्बारे भी लगाए गए हैं जोकि नीले और पीले रंग का है।

यह एक बहोत बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है जिसके आगे में बहोत सारा पेड़ भी दिख रहा है।

एक बस भी दिखाई दे रहा है और कुछ लोग भी दिख रहे हैं पीछे में बहोत सारा बिल्डिंग भी बनाया गया है।

तारा पंखा भी लगा हुआ दिख रहा है आगे में एक बोतल भी रखा गया है पीछे में और भी बहोत सारा सामान लट--

यह एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें कि बाँस का बहुत सारा त्रिकोण टाइप का कुछ बनाया गया है जिसमें कि बहुत सारा रस्सी से कुछ कुछ इस --

यह एक लैब दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारा मशीन रखा हुआ है आगे में एक आदमी भी खड़ा है जिसने कि डॉक्टर जैसा कुछ कपड़ा पहन रखा है।

यह एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारा कपड़ा रखा गया है जिसके बगल में और भी बहुत सारा कपड़ा लटकाया गया है जो की--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

यह एक दवाई का दुकान दिखाई दे रहा है जिसके पीछे में बहुत सारा दवाई रखा गया है और आगे में भी बहुत सारा दवाई रखा गया है अंदर में बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं।

कपड़े का दुकान दिखाई दे रहा है जिसके आगे में बहोत सारा ब्लाउज लटकाया गया है बगल में एक--

जिसके बगल में बहुत सारा पाचक जैसा भी कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर में काऊ मिल्क भी दिख रहा है और जिसके बगल में और भी बहुत सारा डा --

के ऊपर में एल_आई_सी का भी इस्टीकर लगाया गया है अंदर में एक आदमी भी बैठा हुआ दिख रहा है।

आगे में बहोत सारा फूल भी लगाया हुआ है जिसके नीचे में दो तीन लोग ऊपर में ही खड़े हैं और बहोत सारे लोग पीछे भी हैं।